या फिर करने वाले है कुछ होने कुछ होने वाला है।

यह हमारे रायपुर या बिलासपुर का पिक्चर हॉल है जिसमें लोग पिक्चर देखने आते हैं।

--लोग यहाँ से मारूति सुजुकी लेते होंगे।

यह कोई शहर का बहोत बड़ा रेस्टोरेंट हैं जिसमे बहुत कुर्सियां टी. वी. लाइट लगा हुआ हैं।

यह कोई शहर का बहुत बड़ा हायर सेकेण्डरी स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे और यहाँ का मैदान भी बहुत बड़ा है।

यह कोई राह का बहुत बड़ा मैदान जैसा दिख रहा है जिसके आस-पास में घर जैसा बना हुआ है और एक गेट भी--